जिसकी छत के ऊपर कुछ भगवान की प्रतिमाएं लगी हुई है और मंदिर के ऊपर जो प्राकृतिक बहुत अच्छी है।